कई सारे पेड़ पौधे भी है।

कई सारे चीजें भी मौजूद है।

और यहां पर एक आदमी उसे--

जिम के कई सारे मशीन्स हैं।

और यहां पर कई सारे बॉक्स भी रखे हुए हैं।

जहां पर वायर्स भी है और लाइट लगे हुए है।

यह सफेद रंग के दो दरवाजे हैं।

और यहां पर कुछ पुड़ियों में सामान डालकर रखा गया है।

और अंदर फूलों से सजाया हुआ है।

ये एक कपड़ों की दुकान है।

नीली कलर से पेंट किया गया है।